बहुत ही भीड़-भाड़ इलाका है ये एंड भो एक औरत है जो पीला रंग की साड़ी पहनी हुए पीला रंग का कपड़ा पहना हुआ एक चश्मा लगाए हुए है ऐसा--

छज्जा का घर टीना का घ छज्जा है सामने में वाइट घर है राइट साइड वाइट घर है।